यहाँ ये बैंक एस.बी.आई बैंक का ए.टी.एम लग रहा है योनो कैश यानी और बगल में सीढ़ी है जिसपे बहुत सारे लोग जा रहे है आ रहे है बगल में एक लेडी है बैग लेकर बहुत सारे स्कूटी बाइक लगी हुई है।

''दो मैम है जो एक रेड कलर का साडी पहनी है और एक येल्लो कलर का साडी पहनी हुई है एक इधर बच्चे को बता रही है एक उधर बच्चे को बता--''

और एक कैप एक कैप लगाया हुआ है और ब्लू कलर का टी-शर्ट और क्रीम कलर का पैंट पहना हुआ है एक क्रीम कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है और एक और ब्लू कलर का टी-शर्ट और ब्लैक कलर का ट्रॉउज़र पहना हुआ है और ये लोग तीनों एक साथ ख --

और बलून दिख रहे है ऑरेंज और ब्लू और ग्रीन कलर का फिर व्हाइट कलर का बलून है बहुत सारे पेन टंगी हुई है कापी किताबे--